और बोर्ड लगा हुआ है बुक एजेंसी लिखा हुआ है इस बोर्ड पर अंदर बुक है बहोत सारे दिख रहे है।